और वही बोहोत सारी पीछे कार खड़ी हुई हैं।

एक बोहुत बड़ी नदी है जिसके ऊपर एक छोटा सा पुल बना हुआ है | नदी में एक आदमी कूद भी रहा है जिसने का --

हरे-भरे पेड़ पौधे हैं। ऊपर आसमान है जिसका रंग नीला और सफ़ेद है।

जिनका रंग हरा है ऊपर आसमान है जिसका रंग नीला और सफ़ेद है वहीं लोग भी हैं।